इस इमेज में वी मार्ट की दुकान दिख रही यहाँ पर सामने वी टू लिखा हुआ है उसके पड़ोस में पांच सौ सात सौ लिखा हुआ है। पांच सौ रुपए सात सौ रुपए लिखा हुआ है।

यहां पे खंबे लगे हुए हैं जो वाइट कलर के हैं। यहां पे काफी लोग कपड़े खरीद रहे हैं।

इसी में मेला लगा हुआ है यहां पर एक चर्च का सेट बनाया गया है और हा सामने कुछ पिंक कलर के और कुछ बनाए गए हैं।

पीछे भी और काफी सारे पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे ऑरेंज वाली डिजाइन इस एलो घर में बनी हुई है। यहाँ पर काफी सारी विंडो बनाई हुई --

इस इमेज में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जहां पर बाहर के बताशे रखे हुए हैं।

यहां धूप आ रही है। ये पेड़ के नीचे यहां पे एक एलोवेरा पड़ा हुआ है। यहां धूप आ रही है। दोपहर का मौसम है।

ऊपर से पंखे लगे हुए हैं और ये पूरी बिल क्लास रूम येलो कलर में हैं।

पीछे की ओर दो तीन बिल्डिंग बनी हुई हैं जो एक दो फ्लोर की बिल्डिंग है एक चार या पांच फ्लोर की बिल्डिंग है।

पीछे की ओर बड़ा सा ग्राउंड बनाया हुआ है जिसमें घास उगी हुई है कुछ सूखा बन पड़ा हुआ है।

इसमें एक पार्क दिख रहा है बीच में एक स रोड जा रही है जो टाइल्स वाली है यहां पे सामने की ओर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहां पे और भी टाइप के बड़े बड़े पेड़ लगें हुये है और इन पेड़ों के उपर रेड और व्हाइट कलर में कलर में पेंट हुआ पड़ा है। नीचे में कुछ फ्लावर पॉट रखें हुये --

ये टाइल्स तीन कलर की है व्हाइट ब्राउन और येलो कलर की।

पीछे डिजाइन बनी हुई है ब्लैक और येलो कलर में कुछ आजू बाजू में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं फिर आदमी ट्रेनर पर आ रहा है।

इस इमेज में एक पेट्रोल पंप की इमेज नजर आ रही है यहां पर काफी सारी कार्स और बाईकें खड़ी हुई हैं।

गाड़ी खड़ी हुई है पीछे की ओर एक शटर लगा हुआ है कुछ और लिखा हुआ है।

स्लिपवे लिखा हुआ है यहां पे फ्रिज रखी हुई है जिसके पर कोका कोला लिखा हुआ है।

पीछे की ओर कुछ कार्स खड़ी हुई है और उसके पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

इस इमेज में एक बड़ा सा स्टेज दिखाई दे रहा है यहां पे फंक्शन हो रहा है।

एक हल्की सी बाउंड्री उठी हुई जिसके ऊपर लोहे के रोड जा रही यहां पे जंजीरें बंधी हुई हैं।

सामने की ओर सन सेड हो रहा है जहां पर रोड के बीच में व्हाईट कलर की पट्टि जा रही है उसके उपड मे रोड बनी है।

पीछे पीछे रोड जा रही है टाइल्स वाली उसके उपर छोटे छोटे खंभों को लाईटे लगी हुई है।

इस इमेज में एक आदमी सेल्फी ले रहा है जिसने कोट पेंट पहन रखा है ब्लैक कोट पिंक कलर कि शर्ट एक टाई और एक गमछा डाल रखा इसके नीचे एक और छोटा सा बच्चा है।

यहां पे दो खंबे लगे हुए हैं यहां पर बाहर की ओर एक खंभा लगा हुआ है इसपे कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं नीचे कुछ बना हुआ है चौकोर टाइप ।

यहां पे मुझे एक पीछे ऑटो जा रहा है रोड के ऊपर। यहां पे पीछे रोड बनाई गई है। साइड में बाउंड्री उठ रही है। इसके ऊपर तारें लगी हुई हैं।

जो काफी बड़ी है यहां पर एक आदमी नदी को देख रहा है नीचे को लाइटें लगी हुई हैं।

बाहर की ओर कुछ पौधे लगे हुए हैं दीवार साइड और कुछ बोर्ड स्विच बोर्ड लगे हुए हैं कई स्क्रीन स्क्रीन लगी हुई है कुछ स्विच बोर्ड लगे हुए हैं।

यहां पे एक आदमी स्कूटी को खड़ी कर रहा है एक बाइक खड़ी हुई है यहां पर ए रोड धूप की रिफ्लेक्शन आ रही है यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सामने की ओर एक रास्ता जा रहा है नीचे उसके टायर्स लगी हुई है यहां पे ग्रिप बनाने के लिए ग्रिप बनाने के लिए स्टील भी कुछ लगाया गया है।

यह एक माल की इमेज है जहां पर सामने एक गेमिंग सेंटर बनाया गया है यहां पर काफी सारे गेम्स रखे हुए हैं और यहां पे एक छोटी रेलगाड़ी जा रही है।

यहां पर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पेड़ लगे हुए है।

यहां पे कच्ची हुई है यहां पे कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ--

प्लेटफार्म नंबर टू पे टीन सेट लगा हुआ है और नीचे कुछ बेंचे लगी हुई हैं पीछे उसकी एक बिल्डिंग है और उसके पीछे एक टावर लगाए गए हैं।

टेबलों के नंबर सैंतालीस अड़तालिस ऊंचास है इसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है नीचे की रिफ्लेक्शन दिख रही है।